नि एक सड़क है पक्की सी जिसमें कुछ गाडिया चल रही है कुछ लोग खड़े हुए है और नीचे कुछ दूब है उसने चारो तरफ से एक पेड़ लगा हुआ है एक बड़ी सी दीवार है जिसपे काई लगी हुई है जि।

आसमान है सामने एक बड़ा सा इमारत बनी हुई है जो की एक इमारत है इसमें कुछ छेद बने हुए छेद लगे हुए चारो तरफ से खिड़कियां हैं कुछ छोटे छोटे --

बड़ी स एक म उस ऊपर आसमान है खुला बगल से एक टावर है उसके बगल से कुछ गाय आ कुछ बसें रखी हुई हैं बगल से कुछ एक इमारत है जिसका काई है और चारों तरफ से कुछ जालियां और रखी हैं।

कुछ टेप रखे हैं कुछ पेंसिल मार्कर वगेरा रखे हुए हैं चारो तरफ नीचे कुछ कारपेट दिख रही हैं कथई कलर की।

साथ में एक बड़ा सा पत्थर है चारो तरफ से पेड़ पौधे है ऊपर खुला आसमान है बगल से कुछ मिट्टी डली हुई है चारो तरफ से

ये एक बड़ी-सी कोचिंग सेंटर है जिसमें टेबलों पर कुछ लोग बैठे हुए है बीच बैंगनी कलर के पर्दे लगे हुए है और पंखे लगे हुए है एसीयां लगी हुई है लाइट और --